चार दूगो पेड़ उड़ नजर आ रहा है पत्थर-वत्तल नजर आ रहा है तालाब है।

दोगो लड़का है पीछे भी लड़का जो एगो दो तीन तीन तीन चार बैठे हुए हैं। मछली है लगता है कि मछली दोनों देख रही है। ई झार ई महाराष्ट्र का नजर आ रहा है।

ई डिश लगा हुआ है बड़ा टेबुल लगा हुआ है चम्मच है ई लगता है कोई डिश बना हुआ है क्या चीज़ का है।

ये रोड है दोनों किनारे दोनों किनारे फूट है गाड़ी नजर आ रहा है आदमी नजर आ रहा है विजली का ए.सी. लगा हुआ है ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ।